इ बहुत ही प्राचीन काल की देखते हुए नजर आ रही है इसकी नकासी वगैरा बहुत सुंदर की हुई गई है ये लाइन में रखने के लिए साइड से स्टील की लंबी लाइन --